एक लड़कियां भी दिखाई दे रही पोस्टर भी लगी दिखाई दे --

ये यहां पे लगा हुआ है यहां पर एक पोस्टर भी लगे हुए है ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

कुछ ब्लैक टाइप का जानवर दिखाई दे रहा है और एक पौधा दिखाई दे रही है।

यहां पे एक बैंक दिखाई दे रही है जिसकी दीवार का कलर व्हाइट और येलो है और यहां कांच का गेट भी लगा हुआ है और शटर भी दिखाई दे रही है।

ऊपर से बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहा बिजली के तार भी दिखाई दे रही है।

यहां पे एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है।

सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे जमीन भी दिखाई दे रहे हैं उसने टोपा भी लगा हुआ रखा है।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

बाउंड्री टाइप की भी दिखाई दे रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है।

यहां पे बहुत सारे मकान दिखाई दे रहे है जिनकी दीवार का कलर व्हाइट पिंक और ब्लू है और यहां पे पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है।

लड़की डांस करते हुई दिख रही है उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं पोस्टर भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बाहर भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार का कलर वाइट है और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे और नीचे ग्रीन मैट है इधर ब्लैक कलर का कारपेट --